इस फोटो में सामने एक बड़ा सा फूल जैसा कुछ है एक क्लॉक टावर है।

बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं जो की हरे रंग के हैं।

इस फोटो में सामने एक बड़ा सा पेट्रोल पंप है।

ग्राउंड के अगल बगल काफी सफेद रंग की लाइट जल रही है।

रात का समय है आसमान काला है।

इसमें सामने में एक जे_सी_बी और एक हाईवा खड़ा है।

रात का समय है आसमान पूला पूरा कला है।

सामने बहोत सारे बच्चे हैं जो डांस कर रहे हैं।

और बहोत सारे फूलों से सजाया गया है ऑरेंज रंग के।

धुँध के कारण पहाड़ ही हल्का सफेद जैसा ही लग रहा है।

स्काई ब्लू रैकों में काफी सारा सामान रखा हुआ है।

इस फोटो मे सामने एक बड़ा सा गाड़ी का वर्कशॉप है।

कार प्ले पेंट जो है वह नीले रंग का ग्लासी फिनिश वाला है।

इसका दीवाल सफेद रंग है और भूरा रंग का।

जो हल्का मोटा है और सफेद रंग का शर्ट पहना है।

आसमान में धूप निकला हुआ है जो पूरा आसमान सफेद है।

बहोत सारे घ झाड़ी झाड़ी है।

एक सैनिटरी का दुकान है जहां पर बहुत सारे नल और हैंड शावर और नॉर्मल शॉवर हैं।

इस दृश्य में सामने एक रोड है जोकि काला रंग का है।

उपर मे सीलिंग सफेद रंग का है सीलिंग में काफी सारी लाइटें लगी हुई है।

और इंजन पूरा काले रंग का है।

रात का समय है आसमान पूरा काला है।

साथ में एक औरत है जो की साड़ी पहनी है लाल और नीले रंग की।

सीलिंग में लाइट जल रहा है सफेद रंग का।

पीछे एक लाल रंग का बड़ा सा फ्रॉक टांगा हुआ है।

इस फोटो में सामने एक हीरो का शोरूम है।

में बहुत सारे रैक है रैकों में ढेर सारा सामान रखा हुआ है।

इस फोटो में सामने एक सब्जी मंडी है।

टोकरियों में हरी हरी मिर्च रखी हुई है नींबू रखा हुआ है।

पीछे से दो आदमी लोग बैठे हुए हैं।

यहां पानी काफी साफ है जिसमें की आर पार दिख रहा है।

अन्दर बहोत सारे माइक्रोवेग माइक्रोवेब ओवन रखे हुए हैं।

यहां बहोत सारे क्रेट रखे हुए हैं जो प्लास्टिक से बने हैं।